मुझे सामने एक साइड में दो दोनों तरफ सुंदर सुंदर प्लांट दिख रहे हैं और जिसमें बीच में येलो कलर की सीटिंग प्लानिंग चेयर्स हैं।

एंड करिकुलम मे सी_बी_एस_सी और एच_बी_एस_सी दोनो को फॉलो किया जाता है।

ये एक जिम जिम है जिसमें तरह-तरह के मशीन्स है।

ये एक डांस परफॉर्मेंस एरिया है जिसको डेकोरेट किया हुआ है बैलून से स्टेज है एक--